वह बल लग रहा है फूलों से दुकान को सजा रहा है।

सात डब्बे हैं चॉकलेट के डब्बे हैं।

भीतर में एक लाल रंग की छोटी सी बल्ब बल रही है।

यह प्लांट है इस धागे में एक बुड्ढा और एक बच्चा ऊपर में बैठा हुआ है।

नीचे में धागे बहुत ज्यादा लपटें हुए हैं।

तीन चार बेसन भी है नीचे में एक डब्बा भी है।

ये नीचे बहुत सारे टैग लगे हुए है बीस परसेंट ऑफ पचास परसेंट ऑफ तीस परसेंट ऑफ सत्तर परसेंट ऑफ इस तरह बहुत सारे टैग लगे हुए हैं।

एक दुकान है इस दुकान के ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ है।

पोस्टर में लिखा हुआ है सत्या यहां फ्लेक्स पेंट होता है।

इसमें बहोत सारे बच्चे बैठे हुए हैं।

ट्रक से सामान लोडिंग किया जा रहे हैं।

दो मैडमे खड़ी हुई है दीवाल के पीछे एक बोर्ड है जिसमें लिखा हुआ है हैप्पी दिवाली और ऊपर में एक पंखा लगा हुआ है ।

नीचे में एक डि_जी रखा हुआ है डी_जी का रंग ब्लू रंग है।

हर तरफ से घेरा हुआ है पुतला इसके नीचे हरी हरी घासें हैं।

टेबल के उपर दो जग रखे हुए हैं बहोत सारे प्लेटें भी रखी हुई है।

यह एक पेट्रोल पंप का दृश्य है।

यह एक दुकान है जिसके ऊपर बैनर लगा हुआ है।

शटर भी ऊपर हैं और प्लास्टिक की पर्दे लगी हुई हैं।

एक लाल रंग का गुंबद भी बन गया है जिसके ऊपर कुछ सजाया गया है।

सामने दो मोजे पहने हैं एक कपड़े और शर्ट टी शर्ट और जींस पहना--

पंखे भी दिखाई दे रहे हैं।

और एक चप्पल भी दिखाई दे रहा है इसमें बहोत सारे पत्थरे भी हैं।

डैम में बहुत सारे पत्थले भी है हरे हरे पौधे भी है।

लिखा हुआ है मां दुर्गा ढाबा लाल रंग का गेट का एंट्री का है।

साइड में भी बहुत कोहरा है बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं।

शायद में भी एक घर बन रहा है ।

इस ऑफिस में तीन सोफे रखे हुए।

और दो पिलर भी लिखा हुआ है बंगाली में फ्रना निवास और अंदर में तीन चार कपड़े भी टंगे हुए हैं।